ये एक बस स्टॉप है और यहाँ पे बहोत सारी कुर्सियाँ हैं और यहाँ पे बहोत सारे लोग हैं जो बैठे हुए है और कोई काउंटर पे भी खड़ा है।

ये एक फ्रूट का दुकान है यहां पे केला आम संतरा ये सारा फ्रूट यहां पे उपलब्ध है और यहां पे दो लोग खड़े भी हैं।

और यहां पे पोस्टर भी लगा हुआ है और यहां पे--

यहां पे एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है और यहां पे एक गेट भी है और इसके ऊपर एक झंडा भी लहरा रहा है।

ये एक रेलवे ट्रैक है और यहां पे बहोत सारे लोग मौजूद हैं और यहां पे थाली में लड्डू रखा हुआ है।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

तेल हो गया बिस्किट हो गया और ये एक शॉपिंग मॉल है।

यह एक ऊंची पहाड़ है और यहां पे एक आदमी मौजूद है और यहां से बहुत सारे ब्रिज दिख रहे हैं।

ये एक झींगा मछली है और इसमें बहोत सारा मछली है और ये पन्नी में पैक है।

यहां पे एस_बी_आई का ए_टी_एम है और यहां पे बहोत सारी दुकान है और यहां पे बहोत गाड़ियां लगी हुई है।

ये एक सैलून है जहां पर बहुत सारी कुर्सियां है और यहा पे एक आदमी है और यहा पे एक फैन भी लगा हुआ है

यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं और यहाँ पे केक है और यहाँ पे कलर कलर के बैलून लगे हुए हैं।